मुझे इस फोटो में एक बहुत बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है मुझे इस फोटो में बहुत सारे पंखे भी दिखाई दे रहे--